और कुछ बेड्स रखे हुए है जो व्हाईट कलर के है और ब्लू कलर के है और एक बास्केट दिखाई दे रहा है जो पिंक कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक ऑटो दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड व्हाईट कलर का है और व्हाईट कलर का है और ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा हैं।